यहां एक ब्यूटी पार्लर की फोटो है।

पीछे में बड़ा बड़ा आईना लगा है।

यहां एक बहोत बड़ी ग्राउंड है।

और जमीन में पूरा ईटा लगा हुआ हैं।

फोटो हैं यहाॅं कई भाई एवंम बहने--

चेयर टाइप से दिख रहे हैं स्टील में--

यहां बैठकर काम कर रहे हैं।

जोकि कैफे टाइप सी लग रही है।

और यह पेट्रोल पंप के साइड का हिस्सा--

छत्तीसगढ़ के बाहर का फोटो है।

टंगाया हुआ भी दिख रहा है।

दो ठो बड़ी बड़ी आईना भी दिख रही है आईना के--

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है यहां बहोत सारी--

यह फोटो एक लक्ष्मण झूले की--

हर्ब गार्डन है और यह गार्डन --

जिसमें शंकर एवं पार्वती भगवान दिख रहें है और--

और एक तिरंगा झंडा फहराने का स्टैंड भी बना हुआ है।

स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे है।

जगह का नाम लिखाया गया है।

आज ऑरेंज कलर का एक भाई कपड़ा पहन कर--

अर बाहर में एक छोटा सा--

और छोटे छोटे बाइक एवं स्कूटी भी रखाया है।

यह ट्रांसपोर्ट के बाहर में एक ट्रांसफार्मा लगा है।

आरे ये हाईवे रोड के किनारे में हैं।

और स्विमिंग पूल के अंदर एक जलपरी--

यह सब्जी मार्केट का फोटो है।

अपने लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।